एक ऑफिस है जहाँ अंदर के साइड चेयर पर बहोत सारे व्यक्ति बैठे है।

यह एक विद्यालय है जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां मैदान में खड़ी हुई है जिसमे स्कूटी की नंबर प्लेट भी आर टू फाइव एफ फाइल सिक्स सिक्स ऐट नाइन है।

अंदर से बाहर की ओर एक व्यक्ति अपने फ्रेंड के साथ आ रहा है जिसने मास्क तथा हेलमेट है।

किनारे पर पेड़ पौधे उगे हुए है थोड़ी दूर पर घर व गाड़ियां है।

यह एक फिसल पट्टी हैं जिसके आखरी छोर पर तीन लड़कियाँ हैं तथा उपर एक छोटा बच्चा बगल में एक और झूला हैं।

यह एक स्टेशनरी हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ हैं आस पास अलमारी मे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं।